और यहां बहुत सारे लोग दिख रहा है और यहां कुछ लोग खड़े हैं और कुछ लोग बैठा हुआ दिख रहा है।

और यहां टेबल के ऊपर टिशू पेपर कुछ मसाले के डब्बे भी रखा हुआ दिख रहा है।

यहां एक पार्क के नजारा दिख रहा है।

और यह यह नजारा चर्च के अंदर की नजारा दिख रहा है।

और यहां ब्लू कलर का बैठने का सोफा भी बहुत सारा दिख रहा है।

यहां ग्रीन कलर का एक कारपेट भी बिछा हुआ दिख रहा है।

यहां पूजा करने की कुछ चीजें भी दिख रहा है।

और यह कुछ कार्टूंस भी रखा हुआ है जो बहुत बड़ा है।

यह दुकाने वाइन शॉप की तरह दिख रहा है।

यहां एक बहुत बड़ा सा महल दिख रहा है।

और यहां कुछ पहाड़ भी दिख रहा है।

और यहां पर पेट्रोल पंप के किनार में एक टोटो भी दिख रहा हैं।

और यहां एक बड़ा सा नोटिस बोर्ड भी दिख रहा है और यहां नोटिस बोर्ड में बहुत सारा नोटिस चिपकाया हुआ दिख रहा है।

यहां एक नजारा दिख रहा है।

और यहां एक बिल्डिंग के ऊपर एम_एस सारीज लिखा हुआ है और उसके नीचे बाटा लिखा हुआ है।